यहां पे कोई फ्लावर के ऊपर पत्ती भी लगी हुई है यहां पर कोई येलो कलर का फ्लावर है कोई ऑरेंज कलर का फ्लावर है।

ऊपर में बच्चे खेल रहे हैं एक बच्चा व्हाइट कलर का टीशर्ट पहना हुआ है।

पीछे में एक घर दिख रहा है घर के ऊपर तार लगे हुए हैं।

यहां पर तीन चार लोग खड़े दिख रहे हैं यहां पे दो कुर्सी दिख रहा है एक कुर्सी के ऊपर कपड़ा लगा हुआ है।

यहां पे कुछ ईंटे रखे हुए हैं पीछे में बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं यहां घास दिख रहा है पौधा दिख रहा है ऊपर में आसमान दिख रहा है।

एक दो बोरा दिख रहा है यहां पे ऊपर में भी बोरा रखे हुए हैं।

यहां पर चार पांच फैन दिख रहे हैं यहां एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है एक महिला दिख रही है।

यहां बहोत सारे चेयर दिख रहे हैं रेड कलर के बगल में एक चेयर और दिख रहा है जो वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है।

खिड़की के ऊपर लाल कलर का पर्दा लगा हुआ है और प्लस साइन का एक बना हुआ है पीछे में एक बल्ब है जो जल नहीं रहा है।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

यहां पे बहुत सारे बाल्टी के ऊपर बाल्टी रखा हुआ है यहां एक आदमी के हाथ में पेन दिख रहा है।

और उजले रंग का टोपी पहने हुए हैं यहां एक व्यक्ति बैठकर पत्थर बहुत सारा तोड़ रहा है।

यहां बहुत सारे गुब्बारे दिख रहे रंग बिरंगे ऊपर में तीन लाइट जल रहा है यहां पे पर पिंक कलर का लाइट भी जल रहा है ऊपर में कपड़े के ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं रंग बिरंगे।

और बगल मे एक रस्सी पे पत्ते टंगे हुए है यहां पे अंदर एक फैन दिख रहा है।

यहां पे एक खंभा दिख रहा है जो वाइट कलर के हैं यहां पे बहुत सारे घास दिख रहे हैं।

यहां पे एक हिरन खेतों में बगल में बहुत सारे हिरण दिख रहे हैं ।

घास दिख रहा है यहां पीछे में एक आसमान दिख रहा है और बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यह एक शोरूम का दृश्य दिख रहा है शोरूम के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे टाटा लिखा हुआ है।

यहां पे कुछ फेवीक्विक लिखे हुए दिख रहे हैं और बगल में प्लास्टिक दिख रहा है जिसमें फेवीक्विक भरे हुए हैं।

यहां पे कुछ रंग बिरंगे बॉक्सेस दिख रहे हैं एक रेड कलर का बॉक्सेस है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है अंदर में चार पांच चेयर लगे हुए हैं।

इसके बगल में एक पौधा लगा हुआ दिख रहा है यहां पे क स्कूल के बाहर चार खिड़की दिख रहे है जो नीले रंग के पेंट किए हुए हैं।

ऊपर मैं एक ब्लैक कलर का तार दिख रहा है जाते हुए ऊपर में थोड़े ब्राउन कलर के घास दिख रहे हैं।

नीचे एक दरवाजा दिख रहा है यहां पे वाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

और कुछ बॉक्सेस रखा हुआ है यहां पे दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे मोटर का चित्र बना हुआ है।